दोबड़ी लगी हुईं है रो के आस आसपास में ईंटें लगाई हुईं हैं और कुछ गमले रखे हुएं हैं गमले भी दिखाई दे रहें हैं।

ये एक बेडरूम है बेडरूम में एक बैडशीट लगा हुआ है और पर्दे भी लगे हुए हैं।

ये एक बेड है और इस बेड में--

ये एक होटल है होटल के आगे टेंट लगा हुआ है।

ये एक चा का स्टाल है और--

इसमें कलर कलर अलग अलग कलर की मालाएं मिलती हैं।

यहां पे काफी टिल्ले दिखाई दे रहे हैं और स्पीकर भी लगे हुए हैं और कुर्सियां लगी हुई हैं।

ये एक नदी दिख रही है और सामने बादल दिखाई दे रहे हैं और उससे पहले एक साइकल वाला फल-फ्रूट --